स्कूल की बसें खड़ी हुई है पीले रंग की। अंदर जाने के लिए ब सीढ़ियों से अंदर अ सीढ़ियों का रास्ता है। सीढ़ियाँ चढ़ के --

ये दृश्य है चिड़िया घर का जिसमे एक-एक हिस्से मे बगुले हैं दो।

सफेद और गुलाबी रंग के पर्दे अम्म अ इस्तेमाल किए गए हैं | बहोत सारे पाम के पौधे हैं यहाँ पे ।

निर्माण का कार्य चल रहा है। फूलों से ऊपर सजाया भी गया है। पूजा भी हुई है यहाँ पे । जिसमे दो थाली मे लड्डू रखे हुए है नारियल है मोमबत्ती जला --

ये एक ऑफिस कि तस्वीर है एयरपोर्ट की जहां पर इमेगरेशन का बोर्ड लगा हुआ है। इ टुरिस्ट का बोर्ड लगा हुआ है। सफेद रंग के काउन्टर बने हुए हैं।

बाँध की तस्वीर है बहुत ही बड़ी झील है जिसमें बाँध ऊपर लोहे का बाँध बना हुआ है ।

मालो की तस्वीर है जिसमें द्वार की तरफ अंदर जाने का ये रास्ता बनाया गया है| बहोत ही सुंदर द्वार सजाया गया है फूलों से बाहर ही जो वर वधु है उनकी फोटो भी लगाई गई है स्टैंड पे ।

तालाब की फ़ो-तस्वीर है जिसमें दो भैसे खड़ी है भैसे बिल्कुल एक मुंह से मुंह भिड़ा के खड़ी है तालाब के अन्दर।

ये जो सीमेंट के ऊपर जो नक्काशी की जाती है उसके अंदर टाइले रखी हुई है तरह तरह की टाइले है ऊपर मां- मूर्तियां है।